इमारत के सामने एक सुंदर उद्यान दिखाई दे रहा है।

यह एक बाजार की एक दीवार का चित्र है।

उस चित्र में हमें स्वक स्वच्छ छ सर्वेक्षण दो हजार बावीस का वर्णन किया गया है।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

इस चित्र में कई मछली विक्रेता अप मछलियां बेच रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक बाइक दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें एक नदी नजर आ रही है।

यह दरवाजा बहुत ही पुराना सा प्रतीत हो रहा है।

इस चित्र में हमें दो नाव पानी में नजर आ रही है।

सेंटर की इमारत दिखाई दे रही है।

यह शॉप एक इंक टैटू पियर्सिंग शॉप हें।

व्यक्ति ने हरे कलर की शर्ट पहन रखी है।

इस चित्र में हमें काले कलर की एक साई नज़र आ रही है।

इस चित्र में हमें एक बहोत ही मनमोहक नजारा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें कई तरह के साइकिलें दिखाई दे रही हैं धन्यवाद।

इस चित्र की दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनी हुई है गांधी जी की प्रतिमा के पास पौधे--

टेबल तथा चेयर दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें रस्सी पर सूखते हुए कुछ कपड़े नजर आ रहे हैं।